दीवाल पर ला इलाहा इल अल्लाह हु मोहम्मद उर रसूल उल्लाह लिखा हुआ है और हाथ में घड़ी है।

ये एक होटल है होटल में दो आदमी लोग बैठे हुए हैं पानी का बोटल है बॉल में कुछ मीठा खा रहे हैं दो ग्लास भी है।

और टीचर्स भी खड़े हुए हैं बहोत सारे यहां पर एक बुरखे में भी औरत खड़ी हुई है एक छोटा सा बच्चा है कैप डाला हुआ है बड़ा दरख--

शॉप में अ सब भरे हुए हैं बिस्किट्स है कुरकुरे है चिप्स हैं।

एक आदमी दो बैग लेकर बस में चढ़ रहा है और पीछे दो--

ये होटल है होटल में दो आदमी लोग बैठे हुए हैं टेबल है टेबल पे कुछ ग्लास है बॉटल है।

ये भी एक घर है बहोत अच्छा फूलों से डेकोरेशन करा हुआ है बाहर एक मौस का प्लांट है।